यह देखे में जैसे की लगत है कोई पहाडी इलाका के फोटो बा बहुत अच्छा अच्छा रोड दिखता ऐमे--

जानत बानी कि एगो आलू बा आलू सब सब्जी में रखा के बन जाला अ आलू के बिना हम के नईखे लगत कि कोई घर में सब्जी बनत होई एगो दिन--

स्विमिंग पुल और ए एमे पुरा एकदम लाइन भी उम्म देल बाटे की कोइ रेसिंग उसिंग स्विमिंग रेसिंग के भी लाइन देल बाटे की अप एंड डाउन कौन केतना जल्दी करता | लाइन बनल बाटे |